ये तीनों फोटो खींच रहा है।

तीनों के तीनों नंगे पैर खड़े हैं।

इस शोरूम पे बहुत सारे बॉक्स पड़ा है।

नीचे में एक खाली कार्टून भी दिख रहा है।

ये एक टेबल में एक इंसान खाते हुए दिख रहा है।

में भी दो आदमियों के पैर दिख रहा है।

कोने में एक बड़े से खिड़की भी दिख रहा है।

निचे फ्लोर में सफेद रंग के टाईल्स लगाया गया है।

यह तस्वीर रात का समय में खींचा गया है।

मे एक लंबा से टावर भी दिख रहा है।

इसमें बहुत सारे लड़के गेम खेल रहे हैं।

इस फोटो पे एक बड़े से बिल्डिंग दिख रहा है। नीचे में मारुति सुजुकी के शोरूम भी दिख रहा है।

सफेद रंग की जैकेट पहने हैं और माथे पे टोपी भी लगाया है।

काउंटर के टेबल पर बहुत कुछ सामान रखा गया है।

नीचे में हरे रंग के कारपेट भी बिछाया गया है।

फोटो पे एक दुकान दिख रहा है इसमें बहुत सारे तोशक रखा गया है।

सामने में टेलर मशीन भी दिख रहा है टेलर मशीन के ऊपर एक क्यू_आर कोड भी रखा गया है उसके पीछे छोटे से बेड भी दिख रहा है।

फोटो पे एक चर्च दिख रहा है इस चर्च के अंदर बहुत सारे फादर और सिस्टर भी दिख रहा है।